पोस्टर में कुमार लिखा हुआ है।

ऊपर स्टेज पर दो साधु बैठे हुए हैं।

जहां एक आदमी हूडी पहनकर फोटो खिंचवा रहा है।

पोस्टर पर हरिओम डेयरी ताजा पनीर लिखा हुआ है।

पोस्टर पर लिखा है यहां पर शुद्ध घी ताजा पनीर दही खोवा इत्यादि मिलता है।

एक रैक में तेल एक रैक में कुरकुरे एक रैक में भुजिया रखे हुए हैं।

यह एक सब्जी दुकान का फोटो है।

ऊपर बिशॉप स्कूल लिखा हुआ है।

नीचे एक पोस्टर पर यू आर अंडर सी_सी_टी_वी_सर्विलेंस लिखा हुआ है।

यह एक जिम सेंटर का फोटो है।

सीलिंग में पिज़्ज़ा हट का लोगो टंगा हुआ है।

बैग में बायो में लिखा हुआ है।

बहुत बड़े बड़े पत्थर भी हैं।

सीलिंग पर एक प्रोजेक्टर लगाया हुआ है।

इस चित्र में पानी का फव्वारा है।

और इधर स्कूटी भी है।

ये एक ई रिक्शा शोरूम का फोटो है।

जहां दो व्यक्ति खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं।

टी शर्ट पर अरमानी एक्सचेंज लिखा हुआ है।

पीछे दीवाल पर पर्दा भी है।

अलग अलग जगह पर अलग अलग पौधे रखे हुए हैं।

एक बड़ा सा पत्थर है जो ऊपर चढ़ने के लिए काम आता है।

सीढ़ी के नीचे बहुत सारे बाइक्स लगे हुए है।

इनवर्टर के साइड एक रेड कलर का बैटरा रखा हुआ है।

जमीन पर बॉक्स पर बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

यहां एक बहुत बड़ा बाउंड्री भी है।

गेट के साइड में एक कुआं है।